एक आदमी बैठा हुआ है मोबाइल चला रहा है मुँह में मास्क लगा हुआ है बैनर है इधर खिड़की दो तीन दिख रह --

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। क्रिस्चन का है हमको लगता है मंदिर है इधर बहुत सारा आदमी है।

ये एक रोड है।